मुझे यहां एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां टीना से बना हुआ बैरीकेड भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर आई लव सिल्लूक लिखा हुआ भी नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे एक लड़का नाचता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह मुझे तख्ता का सीरी भी दिखाई दे रही है।

गेट के ऊपर में हिंदी के शब्द से कुछ लिखा हुआ है।

यहां मुझे सिरी भी दिखाई दे रही है।

मु झे इस तस्वीर में तीन ब्राउन कलर की गाय दिखाई दे रही है।

यहां मुझे पीछे में एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मुझे गाड़ी का चक्का भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूल की गेट दिखाई दे रही है।

इस घर में मुझे बहोत सारी खिड़कियां दिख रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे सोलर की प्लेट दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे बेंच और टेबल रखें हुए दिख रही है।

और यहां बहोत सारे लाइट्स हैंग करके भी रखे हुए हैं।

मुझे पीछे एक बनता हुआ ब्रिज भी दिखाई दे रही है।

और मुझे यहां दो साइड में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं।

नीचे मुझे कुछ लोहा के टूल्स दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे सीमेंट की खाली बैग भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक आदमी ऑरेंज कलर की शर्ट में दिख रहा है।

मुझे यहां पर लोहे का रॉड भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी के हाथ में लाल कलर का वायर भी पकड़ा हुआ है।

यहां पर मुझे स्विच बॉक्स दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे तीन लोग काम करते हुए दिखाई दे रही हैं।

पीछे मुझे सफेद कलर की बस्ते के अंदर में सामान दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पेन और पेंसिल के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे दो टूल दिखाई दे रही है।

एक टेबल फैन भी दिखाई दे रही है।

घर के अंदर में आदमी बैठा हुआ भी नजर आ रही है।

बाहर में मुझे ब्लू कलर की डॉर्मेट दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बड़ा सा ग्रीन कलर का पानी दिखाई दे रहा है।